इसपर नव नि नीकास लिखा है।

यहां बहुत सारे बैनर लगे हैं रंग बिरंगे।

गार्डन दिखाई दे रहा है।

जमीन पे कारपेट बिछी हुई है।

और बैनर लगा हुआ है आइ सक्रीम का।

और आइसक्रीम की फ्रिज नीचे रखी है।

एक औरत झोला लिए हुए है।

शीशे का दरवाजा है दुकान में।

एक बड़ा सा घर है जिसमें व्हाइट कलर का पेंट हुआ है।

और चोटियां टंगी हैं रंग बिरंगी।

ये एक रोड है जहां ब्लू कलर का बैनर लगा है रोड --

आई_सी_आई_सी बैंक लिखा है और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं।

ये एक रेस्टोरेंट है छत पे पेंटिंग बनी हुई है।

हरे कलर का एक गेट है बड़ा सा।

बहोत सारी हरी हरी घास निकली है मैदान में।

एक रेड कलर का छोटा सा पौधा दिख रहा है।

और एक वाइट कलर की मेज है।

छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए है बलून लगे हैं।

और पिंक कलर का पेंट हुआ है।

एक बड़ा सा पहाड़ है।

दो डंडे दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ पन्नीक दिखाई दे रहे हैं रंग बिरंग।

इसमें कुछ बोट खड़ी नजर आ रही हैं।

एक आदमी खड़ा है पंखे के पास।

यहां एक घर दिखाई दे रहा है।

इसमें तीन पुतले खड़े हैं।

जमीन पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

एक बाहर दुकान है इसपे कुछ चीजें टंगी हैं।

एक ब्लैक कलर का सोफा है।